घर के ऊपर टंकी रखी हुई है ब्लैक कलर की।

यहाँ पे बारबर शॉप लिखा हुआ है और व्हाइट और ब्लू कलर का बैलून लगा हुआ है चेयर्स लगे हुए है और वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए है और इसे सफेद रंग से पेंट किया गया हैं।

एक चेयर लगा है वाइट कलर का बहुत सारे पेड़ लगे हुए है आसमान दिखाई दे रहा है। .

यहाँ पर हमें एक व्यक्ति जो है नीले ड्रेस पे है वो माइक में कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा--

यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है एक कूकू लिखा हुआ है और क्लासिक लिखा हुआ है इसमें।